बाजू मे श्री गणेश डेयरी फार्म लिखा हैं।

उसमें एक पेड़ लगा हैं।

बाजू मे से एक रस्ता गए हुए हैं जो की कच्चे मिट्टी की हैं।

यहाँ पर कोई सा कार्यकालय बना हुआ हैं।

यहाँ पर बहोत बड़ा ग्राउन्ड हैं।

एक कार्यालय हैं नगर पालिका परिषद दीप का जिला कोला--

बाजे रखे हुए हैं और बाजू मे बहोत सारे बिल्डिंगे हैं।

ऊपर लाइट दिखाई दे रही हैं आगे भी बहोत सारी लाइट हैं नीचे रेड हैं।

बीच मे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं।

दिख रहा हैं बाजू मे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहा हैं।

उसके सामने कांच लगा हुआ हैं और एक टेबल हैं।

बाजू मे कुछ दुकाने भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर नीचे टाइल्स वाला घर दिख रहा हैं।

यहाँ पर बहुत सारा जंगल की तरह दिख रहा हैं।

ऊपर बादल दिखाई दे रहा--

जिसका दुकान बड़ी बारीकी से बनाई गई हैं।

बाजू मे एक बिल्डिंग दिखाई रही हैं बड़ी-बड़ी एक कार हैं रोड पर कुछ लोग आ रहे हैं।

यहाँ पर बहोत सारे लोग खड़े हुए है। उनके बीच मे बड़े-बड़े मकान बने हुए है।

बाजू मे कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

बिल्डिंग भी बड़ी बनी हुई हैं यह हॉस्पिटल हैं।

इसमें बहुत सारे पत्थर हैऔर पानी गिर रहा है ऊपर से--

नीचे बहोत सारे पत्ते डले हुए हैं।

तस के बाजू मे छोटी-छोटी घास दिख रही और बहोत बड़े -ड़े पेड़ लगे है।

और एक डबल मंजिल घर भी दिख रहा है पीछे कुछ पेड़ भी दिख रहा है।

यहाँ अब्बड़ सारा और बहुत सारी गाड़िया जा रही हैं।